ऊपर में काले और उजले रंग के बादल छाए हुए हैं।

अंदर में एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है जो उजले रंग का शर्ट पहना हुआ है।

अंदर में ही एक बड़ा सा भूरे रंग का टेबल भी है।

एक व्यक्ति है जो की अपने साइकिल से जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

बगल में एक बड़ा सा गेट है जो कि भूरे रंग का नजर आ रहा है।

यह एक स्टेज का दृश्य है।

स्टेज पर कुर्सी और माइक भी लगी हुई है।

और एक बिजली का पोल भी है।

चारों तरफ बहोत सारी उजले रंग की लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है।

अंदर में एक कुर्सी है।

बिल्डिंग में आने जाने के लिए बीचो बीच में एक रास्ता बनाया गया है।

यह एक पार्क का दृश्य है।

पार्क के अंदर में बहोत सारा बड़ा बड़ा पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और इसके अंदर में कुछ छोटे छोटे टूल भी रखे हुए है।

सभी पौधों का पत्तों का आकार बहुत ही बड़ा है।

बहोत बड़ा बड़ा गोडाउन भी नजर आ रहा है।

एक व्यक्ति बस में चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।

दीवार में पतली पतली पाइप और कुछ बैनर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर दुकान के बाहर में बहुत सारा सेनेटरी का सामान और दो लाल रंग का टूल और बहुत सारा बड़ा बड़ा टंकी भी दिखाई दे रहा है।